यहाँ ये एक साइड में एक प्लेटफार्म है। यहाँ पर कुछ लोग आते हुए नजर आ रहे हैं। बाउंड्री दिया गया है जिसका रंग गुलाबी रंग का है हरे रंग का बॉर्डर है।

अन्दर साइड में घास वगेरह भी नजर आ रहा है दीवार का रंग सफ़ेद है।

यहाँ पर दो पाया बना है। पाया में काला कलर का टाइल्स लगा है। अन्दर में दो आदमी जाते हुए नजर आ रहे हैं।

अ बाहर में बहुत सारा बैलून सजा हुआ है।

जो काफी बड़ा है। यहाँ पर महिंद्रा कंपनी का ऊं हर एक गाड़ी मिलती है। सामने में --

यह एक स्टेशन नजर आ रहा है जो की प्लेटफार्म के ऊपर से ये पिक्चर लिया गया है। सामने में बहुत सारी पटरियां नजर आ रही है।

घर में एक एस.बी.आई. बैंक है नीचे में एक ए.टी.एम. --

यह एक जिम है यहाँ पर पीले रंग के जी डम्बल नजर आ रहे हैं। कुछ काले रंग के भी डम्बल नजर आ रहे हैं।

यहाँ पर सामने में एक वीडियो कैमरा लिए एक आदमी खड़ा है दुल्हन के पास एक औरत खड़ी है एक आदमी भी खड़ा है और उसने साड़ी पहन रखा --

में पटरियां नजर आ रही है।

अ नीचे का टाइल्स बहुत सुन्दर लग रहा है। यहाँ की सजावट बहुत अच्छी लग रही --

सामने रोड पे एक गाड़ी और दो व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

यहाँ पर एक आदमी खड़ा है जो टी-शर्ट और पेंट पहन रखा है पास में एक बैग --

इनके जो चबूतरा बना है उसपे कुछ पिक्चर बनी हुई है।